यहाँ पर काफी सारी मछलियाँ रखी हुई है यहाँ पे एक पिंक कलर का टब रखा हुआ है।

गिलास रखे हुए है यहाँ पर एक कूलर रखा हुआ है जिस पर एक जग रखा हुआ है यहाँ।

यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पर एक डोरमैट बिछा हुआ है।

यहाँ काफी साडी मछलियाँ रखी हुई है वहाँ पर कुछ पार्टी चल रही है यहाँ पर एक लड़का बैठा है।

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर दो कार खड़ी हुई है।

यहां पर व्हाइट कलर का चार्जर लगा हुआ है यहां पर ए_सी लगी है यहां पर कुछ लाइट्स जल रही हैं यहां पर टी_वी ऑन है।

यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है जिन्होंने रेड कलर का फ्रॉक पहन रखा है वाइट कलर का प्लाज़्ज़ो पहन रखा है।

यहां पर एक वाइट कलर की पानी की टंकी रखी हुई है।

यहां पर एक लड़का जा रहा है जिसमें ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए है यहाँ पर एक लड़के ने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है रेड कलर ।